सोफा दिख रहे हैं। पंखा दिख रहा है। लाइट जल रहीं है।

इसमें पानी दिख रहा है लाइट दिख रही है। पेड़-पौधे --

दिख रहे हैंआसमान दिख रहा है।